और ये एक रंगला पंजाब ढाबा--

मल्टी में कई सारी दुकानें बनी हुई हैं।

दुकान में काफी सारा सामान रखा हुआ दिखाई दे रहा है।

और आसपास कुछ मल्टियाँ भी बनी हुई हैं।

और कुछ लोग मल्टी में खड़े हुए हैं।

जो कि लकड़ी के बड़े-बड़े काउंटर दिखाई दे रहे हैं और कुछ कुर्सियां भी लगी हुई नजर आ रही हैं।

पास में एक ए_टी_एम भी बना हुआ है।